और छावड़ी सब्जी वाली धर राखी है एक भाई खड्यो है और केला टंग रहिया ही।

माला टंग रखी है आगे एक पर्दो लगा रखो है ऊपर एक घडी टांग रखी है।

ये दो बाइक खड़ी है रोड का साइड में इसके ऊपर दो हेलमेट रख रखें हैं कोई और आगे एक पहाड़ दिखे है पेड़ पौधा है थोड़ा पानी भी दिखे इसमें।

इके माय टाबरियो बैठ्यो है एक पाइप सी गैर राखी है एक पेड़ी है इने चढ़न की इन पेड़ पौधा खड्या है और एक छोरो आगे बैठ्यो दिखे है।

ये छोटा छोटा टाबर खेलन लाग रहिया है ग्राउंड किसज अलग है और आंके माय पेड़ पौधा भी खड़्या है आगे घर जंगल सो लागे है आगे एक बच्चो भाग रहियो है इने से इने।

किताब जचा रखी है सामने भी किताब जचा राखी है साइड में भी किताब जचा राखी है।

फोटो दिखे है इक महा पानी भी है और फूल भी दिखे है और पता सी भी--